how to catalog serial subscriptions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए आपको koha में admin एक्सेस भी होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
शुरू करने से पहले हम समझते हैं
serials module क्या हैं
magazines और periodicals जो समयसमय पर प्रकाशित होते हैं
इस डेमो में मैं एक serial publication सूचीबद्ध करने जा रही हूं
ऐसा करने के लिए superlibrarian यूजरनाम और password से login करें
homepage पर cataloging पर click करें
फिर + new record पर click करें ड्रॉपडाउन से serials चुनें
एक नया पेज add marc record खुलता है
आइए नीचे दिए गए विवरण भरने के लिए आगे बढ़ें
ध्यान दें कि इस पेज पर कुछ अनिवार्य फ़िल्ड्स हैं
दिलचस्प बात यह है कि koha कुछ अनिवार्य फिल्ड्स में वैल्यू स्वत: ही भरता है
0 से 9 तक के tabs में से हम 0 टैब से शुरू range
000 leader पर click करें koha default रूप से इस value को दिखाता है
फिर 005 date and time of latest transaction field पर click करें
koha मेरी machine के लिए इस value 201808210005590 को स्वत: ही देता है
आप अपने interface पर अलग value देखेंगे
मैं 006 और 007 fields को skip करूंगी
जब 008 fixedlength data elementsgeneral information पर क्लिक करते हैं
koha स्वत: ही वैल्यू 180821b xxu 00 0 eng d देता है
फिर 022 issn टैब पर जाएँ
022 question mark के निकट दो खाली boxes देखें
ध्यान दें
यहां दोनों संकेतक अनिर्धारित हैं
अब koha interface पर वापस जाएँ
अत: मैं दो खाली boxes को skip करूंगी
फिर subfield a international standard serial number पर जाएँ
8 अंको का journal issn 00468991 प्रविष्ट करें
हालांकि आपको journal का issn जोड़ना है जिसे आपने catalog के लिए चुना है
मैं बाकी के fields को skip करूंगी
आप अपनी library की आवश्यकता के अनुसार इन fields को भरने पर विचार कर सकते हैं
फिर 040 cataloging source टैब पर जाएँ
यहां दोनों संकेतक अनिर्धारित हैं
तो मैं दोनों खाली boxes को ऐसे ही छोड़ दूंगी
subfield c transcribing agency पर जाएँ
यहाँ institute/university या department का name type करें
मैं iit bombay type करूंगी
tab 082 dewey decimal classification number टैब पर आएँ
field a classification number में 66062 प्रविष्ट करें
इसके बाद शीर्ष पर जाएँ और 0 से 9 के टैब में से 2 टैब पर click करें
फिर 245 title statement: टैब पर जाएँ
245 के समीप दो खाली boxes पर जाएँ जैसे कि पहले बताया है जैसे ही आप question mark पर क्लिक करते हैं
तो संबधित tag के लिए पूर्ण marc 21 bibliographic format खुलता है
फिर koha interface पर वापस जाएँ
अब पहले खाली box में 0 type करें ध्यान दें 0 no added entry के लिए संकेतक है
दूसरे खाली box में भी 0 type करें
दूसरा संकेतक nonfilling character का प्रतिनिधित्व करता है
मैंने 0 टाइप किया है क्योंकि इस title में nonfilling character है
field a title में type indian journal of microbiology
आप यहां अपने journal का शीर्षक type कर सकते हैं
अब 260 publication distribution etc पर जाएँ
260 के समीप दो खाली boxes पर जाएँ
इसके लिए दोनों संकेतक अनिर्धारित हैं इसलिए मैं दोनो खाली boxes को ऐसे ही छोड दूंगी
अब मैं अपनी पुस्तक के लिए विवरण भर दूंगी आप अपनी पुस्तक से संबंधित विवरण type कर सकते हैं
field a place of publication distribution etc में new delhi प्रविष्ट करें
field b name of publisher distributor etc में springer प्रविष्ट करें
सबफिल्ड c date of publication distribution etc में 2017 प्रविष्ट करें
अब फिर से शीर्ष पर जाएँ और 0 से 9 के टैब्स से टैब 3 पर क्लिक करें
अब 300 physical description पर जाएँ
300 के समीप दो खाली boxes पर जाएँ
इसके लिए दोनों संकेतक अनिर्धारित हैं इसलिए मैं दोनों खाली boxes को ऐसे ही छोड़ दूंगी
field a extentमें मैं 11 v type करूंगी
ध्यान दें कि मैं इस journal को 11 v से आगे की सदस्यता ले रही हूं
तो आपको अपने journal के अनुसार प्रविष्ट करना होगा
अब 310 current publication frequency पर जाएँ
310 के समीप दो खाली boxes पर जाएँ
इसके लिए दोनों संकेतक अनिर्धारित हैं इसलिए मैं दोनों खाली boxes ऐसे ही छोड़ दूंगी
tag का विस्तार करने के लिए current publication frequency पर click करें ताकि हम subफ़िल्ड भर सकें
सबफिल्ड a current publication frequency में मैं quarterly टाइप करूंगी
यह इसलिए क्योंकि मेरा जर्नल quarterly periodical serial है
यदि आपका अलग है उदाहरण के लिए: monthly bimonthly आदि तो तदनुसार भरें
फिर शीर्ष पर वापस जाएँ और 0 से 9 के टैब्स से 6 टैब पर क्लिक करें
650 subject added entrytopical term फिल्ड पर जाएँ
650 के समीप दो खाली बॉक्स पर जाएँ पहले खाली बॉक्स में 1 टाइप करें
ध्यान दें कि: 1 primary level of subject के लिए संकेतक है
दूसरे बॉक्स में 0 टाइप करें
ध्यान दें कि 0 library of congress subject headings thesaurus के लिए संकेतक है
आगे सबफिल्ड a topical term or geographic name as entry element आता है
यह मैं विषय शीर्षक microbiology टाइप करूंगी
आपको अपनी पुस्तक या सीरियल के लिए एक प्रासंगिक विषय शीर्षक टाइप करना होगा
यदि एक से अधिक keyword जोड़ना है तो जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल में बताया गया है छोटे बटन repeat this tag पर क्लिक करें
टैब 650 का डुप्लिकेट प्रदर्शित होता है
शीर्ष पर वापस जाएँ और 0 से 9 के टैब से टैब 7 पर क्लिक करें
खुले हुए नए पेज पर 700 added entrypersonal name टैब पर जाएँ
700 के समीप दो खाली बॉक्स पर जाएँ पहले बॉक्स में 1 टाइप करें
ध्यान दें कि 1 surname का संकेतक है
दूसरा संकेतक marc 21 द्वारा अनिर्धारित है इसलिए मैं इसे खाली छोड़ दूंगी
टैग का विस्तार करने के लिए added entrypersonal name पर क्लिक करें ताकि हम सबफ़िल्ड भर सकें
सबफिल्ड a personal name में editors नाम प्रविष्ट करें
आपको अपनी पुस्तक या सीरियल editors का name टाइप करना होगा
याद रखें कि पहले comma के साथ surname और फिर first name लिखना है
अतं में 0 से 9 के टैब्स से टैब 9 पर क्लिक करें
942 added entry elements koha पर जाएँ
सबफिल्ड c: koha item type and from the drop down पर जाएँ और ड्रॉपडाउन से serial चुनें
सभी विवरण भरने के बाद पेज के बाएं कोने में save पर क्लिक करें
मेरे द्वारा दिए गए शीर्षक के साथ एक नया पेज खुलता है
मेरे इंटरफैस पर यह दर्शाता है: items for indian journal of microbiology
फिर add item के लिए
cost normal purchase price
मैंने अपने library के अनुसार कुछ विवरण भर दिए हैं
आप वीडियो को रोक सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी के अनुसार विवरण भर सकते हैं
तिथि को स्वत: चयन करने के लिए date acquired फ़ील्ड के अंदर क्लिक करें हालांकि ध्यान दें कि तिथि को एडिट कर सकते हैं
यदि आपके पास किसी विशेष फ़िल्ड के लिए जानकारी नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें
याद रखें कि koha डिफ़ॉल्ट रूप से निम्न विवरण भरता है
current location
इसके अतिरिक्त आप पेज की नीचे बटन
add multiple copies of this item पर क्लिक कर सकते हैं
सभी विवरण प्रविष्ट करने के बाद पेज के नीचे add item टैब पर क्लिक करें
जर्नल के प्रविष्ट विवरण के साथ एक और पेज खुलता है:
इसी के साथ हमारे पास जर्नल शीर्षक indian journal of microbiology by kalia vc के लिए cataloged है
उचित विवरण के साथ लाइब्रेरी के biology section के लिए
अब आप koha से लॉगआउट कर सकते हैं
koha इंटरफ़ेस के ऊपरी दाएं कोने पर जाएँ
spoken tutorial library पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से लॉगआउट का चयन करें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
नियतकार्य के लिए journal of molecular biology को सूचीबद्ध
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है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
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद